बीच में डेकोरेशन के लिए टावर लगा हुआ है।

जिसमें हरियाली मतलब छोटे-छोटे हरे-हरे पौधे दिख रहे हैं साथ में बड़े --

एक बहोत अच्छे बेड वगैरह आदि समान मिल रहे--

जिसमें कुछ औरतें हैं जो पानी से है।

साथ ही इसमें अलग-अलग तरह के चद्दर सिंगल बेड की चद्दर व डबल बेड की चद्दर दिखाई दे रहे हैं।

इसके अलावा यहां पे बहोत बड़ी और छोटी कुछ फोन कुछ रिमोट --

इसे नॉर्मल भाषा में टाइपराइटर भी बोल सकते हैं।

बड़ी छोटी टेबलें लगी हुई है जिसमें यहां पर टेबल कुर्सी और ये ।

साथ ही ऊपर की तरफ एक साइकिल के दो पहिए जैसे डेकोरेशन की हुई है।

यह एक साइकिल जैसे लग रहा है।

जो पेंटिंग करी है कुछ है जो एयरक्राफ्ट कर रही है।

यह एक घर की फोटो है।

एक बड़ा सा कूलर लगा हुआ है।